मिठाई के दुकान का नजारा दिखाई दे रहा है।

नीला आसमान दिखाई दे रहा है।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

एक ड्राइंग स्टैंड दिखाई दे रहा है।

सामने एक टॉवेल दिखाई दे रहा है।

मूर्ति को कई सारे मालाओं से सजाया गया हुआ दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के दीवार का रंग नीला है।

दुकान का नजारा दिखाई दे रहा है।

गुलाबी रंग का कपबोर्ड दिखाई दे रहा है।

पेट्रोल पंप के उस पार सड़क दिखाई दे रहा है।

सीलिंग पर एल_ई_डी बल्ब जलता हुआ दिखाई दे रहा है।

हाथ से बनाया हुआ दरवाजा दिखाई दे रहा है।